यहाँ पर अ अ यहाँ पर ब्रिज दिखाई दे रहा है बड़ा सा।

और एक झोपड़ियां भी है यहाँ पर जहां पर बैठने की स्टैंड है।

और यहाँ पर अ एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है और नीले कलर की लाइट जल रही है छत पर ।